पुरुष ने पैंट और शर्ट पहना हुआ है।

यहां पर कई सारी झाड़ियां दिखाई दे रही है।

सामने की ओर कुछ पुरुष भी यहां दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग पर एक बोर्ड भी लगा दिख रहा है।

बाहर की ओर कुछ वाहन भी दिखाई दे रहे हैं।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

सामने की ओर कहीं सारे वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

पत्थर पर एक पुरुष बैठा हुआ दिखाई दे रहा ह--

बोर्ड पर हीरो सर्विस लिखा हुआ है।

यहां पर एक बड़ी सी शॉप दिखाई दे रही है।

चोप में कई सारा सामान रखा हुआ दिख रहा है।

यहां पर कई सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

सामने की ओर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

सामने की ओर कुछ कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

चौक में कई सारा सामान रखा हुआ दिख रहा है।

यहां पर एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर तार फेंसिंग दिखाई दे रही है।

सामने की ओर कई सारी जगह दिखाई दे रही है।

आस पास में कई सारे पेड़ पौधे भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

ऊपर की ओर फूलो का डेकोरेशन दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर कई सारे चूल्हे दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर फर्नीचर लगा हुआ दिख रहा है।

शोप आरती बुक सेंटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई सारे पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कई सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

सामने की ओर ए_सी लगा हुआ दिख रहा है।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

यहां पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है।

आस पास में कई सारे पुरुष यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

कार लाल कलर की दिख रही है।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

यहाँ पर घर दिखाई दे रहा है।